दिख रही के एक जिम है।

और इंसान लोग मुझे दिखाई दे रहा है जो अलग अलग कलर का कपड़ा पहन रहा है।

और उसके सामने इंसानों लोग बहोत जादा है खड़ा है बाबा जी का सामने--

इस पिक्चर मुझे दिख रहा है कि ये एक अअ फ्रूट बाजार है

इस पिक्चर मुझे दिख रहा है की अ फिल्ड में एक फील्ड में इंसान लोग चल रहा है।

इस पिक्चर मुझे दिख रहा है कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का बोर्ड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा दिखाई दे रहा है।

और ये जो अभी पूरा तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है।

इस पिक्चर मुझे दिख रहा है कि ये एक डांटल डांटल रूम है।

और मुझे इसमें दिख रहा है कि मतलब सये यह बहुत लग्जरियस वाला है।

इस पिक्चर मुझे दिख रहा है कि एक कंप्यूटर रूम है।

और सब साइड में चार चार करके टेबल --

बहुत लोग दिखाई दे रहा है और--

उसके बाद यह यह दोनों हैंगर में जो तोपी लोग कैप लोग लटका के हैं।